इस पिक्चर में मुझे लगभग दो से तीन व्यक्ति भी मुझे मतलब दिखाई दे रहे हैं जो मतलब--

इस फोटो में मुझे दिखाई दे रहा है कि जो सामने मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

और सामने मुझे इंडियन पोस्ट का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जहां पर दो बोर्ड लाल रंग के एक हर रंग दिखाई दे--

मतलब दिखने में जो फ़ोटो है वो काफी अच्छी लगे--

मुझे ढेर सारे टेबल वगैरा कुर्सी वगैरा बेड वगैरा दिखाई दे रहा है।

और इन्होंने गेट को काफी अच्छी तरीके से--

ढेर सारे झंडे बयार टंगे हुए हैं और मंदिर के अंदर से एक व्यक्ति बाहर भी आ रहा है सामने मुझे दो से तीन कुर्सियां दिखाई दे रही है और--

फोटो को देख के लग रहा है कि ये एक किसी अं पार्क की फोटो है जहां पर मुझे हरे-हरे रंग के --

और कुछ व्यक्ति भी मुझे यहां पर घूमते फिरते दिखाई--